यहां पर जल के ऊपर कुछ सफेद पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

टाने दिखाई गई हैं जिसमें कुछ चट्टानें छोटी तथा कुछ चट्टानें बड़ी भी हैं।

इसमें पीछे की तरफ एक जंगल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहें--

सामने ही एक खिड़की भी है उसके पास में एक स्विच बोर्ड है।

इस छवि में किसी स्थान की माइनिंग को दिखाया गया है जिनमें सामने की तरफ एक मशीन खड़ी हुई है।

इसके पास में एक बॉटल रखी हुई है तथा एक नोटबुक रखी हुई है।

इसमें ही कुछ दलिया के भी पैकेट रखे हुए हैं तथा पीछे की तरफ कुछ परफ्यूम भी रखे हुए हैं।

यहां पर हल्के गुलाबी रंग के कुछ फूल भी खिले हुए दिख रहे हैं।

इस छवि में एक नदी दिखाई गई है जिसके ऊपर एक पुल बना हुआ है।

इसमें सफेद रंग से ही शुभ लाभ भी लिखा हुआ है तथा ऊपर की तरफ लाल रंग से दो सतिया बने हुए हैं।

ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने सफेद व नीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है।

जिसके ऊपर सफेद रंग की एक पट्टी बनी हुई है उस पट्टी के ऊपर स्वराज सात सौ पैंतीस एफ_ई लिखा हुआ है।

इस छवि में एक बैंक्वेट हॉल दिखाया गया है जिसमें सामने की तरफ एक स्टेज बना हुआ है।

सामने ही एक काउंटर बना हुआ है उस काउंटर के ऊपर सफेद रंग से कुछ डिजाइन की गई है।

यहां पर कुछ रेलिंग भी बनी हुई है तथा पास में ही एक डस्टबिन रखा हुआ है।

सामने वाले घर में दो विंडो तथा एक दरवाजा बना हुआ है।

उसके पास में ही एक मॉनिटर रखा हुआ है जिसके पास में एक और मेज रखी हुई है।

इसके सामने की तरफ एक बोर्ड रखा हुआ है जिसके ऊपर भूपेंद्र राजा का ढाबा लिखा हुआ है।

में किनारे की तरफ एक आदमी की तस्वीर भी छपी हुई है।

यहां पर पीछे की तरफ कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं जिनमें से एक ने लाल गमछा डाला हुआ है।

बैनर लगा हुआ है उस बैनर पर मुख्य अग्निशामक अधिकारी व फायर स्टेशन ललितपुर लिखा हुआ है।

उस काउंटर के अंदर कुछ अंगूठियां रखी हुई नजर आ रही हैं तथा कुछ बर्तन भी नजर आ रहे हैं।

के पीछे भी एक कुर्सी रखी हुई है जिसका रंग हल्का गुलाबी है तथा उसके पीछे एक स्विच बोर्ड --